ये फोटो मे दिखया जा रहा है--

टाइल्स के बगल में एक ठो बाइक खड़ी है स्पलेंडर बाइक --

पिकअप खड़ा हैं पिकअप के अंदर--

ये एक ठो डांस का स्टूडियो है।

और बहोत सारे लेडिस और बच्चे लोग आए हैं डांस सीखने के लिए--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

कप रखे हुए हैं और मिट्टी के कप के साथ--

बहोत सारे मिट्टी के बर्तन भीं रखे हुए हैं।

और सरकारी दफ्तर में एक ठो घड़ी भी लगा है गेट के ऊपर।

और दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज भी बनाया गया है।

दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है।

और बहोत सारे खेलने की जगह भी है।